इसमें मुझे लाइटे दिखाई दे रही है।

इसमें मुझे एक बड़ा गोदाम दिखाई दे रहा हैं।

इसमें मुझे ट्रक दिखाई दे रहा हैं।

इसमें मुझे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इसमें मुझे खिड़कियां दिखाई दे रही हैं।

इसमें मुझे बाइक दिखाई दे रही है।

इसमें मुझे एक बड़ा गेट दिखाई दे रहा है।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

इसमें मुझे सीढ़ियां दिखाई दे रहीं हैं।

इसमें मुझे आदमी औरत दिखाई दे रहे हैं।

इसमें मुझे कुछ नमकीन के पेकेट दिखाई दे रहे हैं।

इसमें मुझे लाइट दिखाई दे रही है। इसमें मुझे पंखा दिखाई दे--

यहां मुझे टेबल और कुर्सी दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे पंखा दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे सैलून की दुकान दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे रंग बिरंगे परदे दिखाई दे रहे हैं।